ये जो पिक्चर है इसमे एक बिल्डिंग का पिक्चर अ शो हो रहा है इसमें जो बिल्डिंग है बो-बो-बोहोत पुराना एक बिल्डिंग है जो अ लाल कलर का जैसे की बिल्डिंग केले जैसा दिख रहा है इसमे --

ग्राउंड मे जो है अभी साइड मे बोहोत सारे बिल्डिंग भी बने हुए है आगे और यहां पे बोहोत सारा पेड़-पौधे भी लगाए हुआ है यानि के एक बोहोत ही ग्रीन नरी जगह है ।

जैसे की समझ मे आ रहा है तो इसमे अ बोहोत सारे कार या बाइक्स भी खड़ा हुए है पीछे और सामने जो कार दिख रही है आपका ब्लैक कलर कार का

तो ये जो फो-पिक्चर यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये बेसिकली एक जिम के अंदर का फोटो --

जलेबी है जोकि अ खाने मे बोहोत ही टेस्टी होता है अ जैसे की इस जलेबी को तल के रखा गया है इसमे अ इस पिक्चर मे वही दिखाया जा रहा है।

यह पिक्चर मे एक छोटा-सा जैसे के जू लगता है उनका ही एक फोटो है इसके अंदर जो है जू के अंदर कुछ छोटे-छोटे आ टोरटल्स चल रहे है इसके अंदर--

इस जगह पे एक जो है बार्ड यानि के काला पंछी जो है अ देखने मे भी बहुत सुंदर लग रही है पंछी को जो पानी के ऊपर से चल रहा है और कुछ चीजों की तलाश मे वो चल रहा है पानी के ऊपर से----